पानी गिरा हुआ है और दिन का समय--

ये कोई ब्रिज टाइप लग रहा है।

शायद समल्लित होकर संस्कृति--

बहोत सारे आस-पास के लोग दूर-दूर से दर्शन करने के लिए आते है यह बहोत ही--

चर्च में प्रेयर कर रहे है तीन लोग--

ये एक कपड़ा दुकान है नीचे में दो साड़ी--